देखने में जो कि बहोत ही सुंदर लग रही है। पीले कलर का यह जो लाइट जल रही है। ये पीले कलर की है जलते हुई दिख रही है और ये रोड के सामने ही खड़ी है। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं। अंदर भी लाइटे जल रही है और ये बहोत सुंदर डिजाइन की हुई है।

पर्दे पूरी तरीके से लगे नही है वो खुले हुए है और वो लोग डिस्कशन कर रहे है जो नर्स है उन्होंने व्हाइट कलर के ब कोट पहने हुए है।

एक बाइक खड़ी हुई है सामने एक आदमी है जो की रेड कलर का शर्ट और व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ है।

कलर की बहोत ही ज्यादा बड़ी गेट है। जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहोत बड़ी एक स्टैचू भी लगी हुई है और दोनों साइड से बहोत ही बड़ी अ इ बोर्ड भी लगा हुआ है।

वो बोर्ड में जो लिखा हुआ है। वो ब्लैक कलर का है और वो बोर्ड ग्रीन कलर का है और गेट बंद है। गेट का ब्लैक कलर का है।

पीच का रोड हैं वो भी मिट्टी मिट्टी हों गया और सामने तो मिट्टी मिट्टी हैं और हल्का ग्रीन ग्रीन कलर का है।